कुछ कारों का शोरूम दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे आदमी दिख रहा है यहाँ पर रंग-बिरंगी कारें रखी हुई है।